यह एक छोटा सा दुकान दिखाई दे रहा है जहां पर ढेर सारे मसाले हॉर्लिक्स मैग्गी --

यह एक पार्क है जिसके बीच में एक झरना लगा हुआ है और आसपास --

यहां डांस कर रही और आसपास --

ऑरेंज वाइट और ग्रीन कलर के बलूंस लगे हैं।

यहां पर एक पोस्ट ऑफिस का पोस्टर लगा हुआ दिखाई दे रहा है और यहां पर पोस्ट ऑफिस का बैंक भी --

जहां पर यह कर कार्यालय चलता है।

आलू प्याज दिखाई दे रहा है जहाँ पर एक लड़का भी दिखाई दे रहा है और यहाँ पर एक तराजू भी रखा हुआ है।

और कान के झुमके भी रखे हुए हैं।

यह एक जिम दिखाई दे रहा है जिसका फर्श--

और यहां पे कई प्रकार की मशीनें भी दिखाई दे रही हैं।

यहां पर एक दुकान दिखाई दे रहा है।

यह एक रेस्टोरेंट एंड कैफे दिखाई दे रहा है जहां पे चेयर और टेबल रखा हुआ है और--

हरे रंग के पर्दे और ऑरेंज रंग के पर्दे लाल कलर के गद्दे से--

यह एक बाजार दिखाई दे रहा है जहां पर हरे लाल --

रंग की मिर्च भी दिखाई दे रही है आसपास गोभी भी दिखाई दे रही है।